इस चित्र में एक बहुत बड़ा स्कूल नजर आ रहा है।

और यहां पर एक पोल में तार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ये दो ठो केक नजर आ रहा है।

और यहां पर ही एक बोतल रखा हुआ भी दिख रहा है।

ये एक जिम नज़र आ रहा है।

और यहां लाल कलर का चप्पल भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ही एक गुमटी भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में दो ठो गुमती दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ये डंडा खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक झोपड़ी का घर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां का मौसम पूरा बादल बादल दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक दरवाजा भी नजर आ रहा है ।

और घर का दिवाल पीला कलर का भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ये दो टेंपो भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही बहोत सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

और यहां पे ये हरे भरे गाछ भी नजर आ रहे है।

और यहां पर ये ढेर सारा लाइट भी जला हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पर ये मुंह खोला हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां बरी पानी भी नजर आ रहा है।

ये एक खेत नजर आ रहा है।

और यहां पर ही आदमी लोग भी नजर आ रहा है।